बड़ी से गणेश की मूर्ति रखी गई है मूर्ति के सामने एक व्यक्ति बैठा है उस व्यक्ति के आस पास बहुत सारे व्यक्ति खड़े हुए है।

सभी व्यक्तियो ने सफेद कलर की टोपी लगाई है।

छत के पास स -साइकिल खड़ी है और बहुत सारी रेता डली हुई है रेता के पास बहुत सारी वाहन खड़ी हुई है।

बिल्डिंग है जिसमे कांच लगा हुआ है बिल्डिंग के सामने कुछ वाहन रखा हुआ है।

बिल्डिंग के अंदर कुछ लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे है बिल्डिंग के आस पास कुछ घर बने हुए है ।

व्यक्तियों मे से एक महिला है और चार पुरुष बैठे है कुर्सिया लगी है और टेबल है।

सामने एक डेरी दिख रही है डेरी के पास एक दुकान है डेरी मे बहुत सारे लोग खड़े है।

सभी लोग सामने की और देख रहे है ईस्टेज पीला कलर का बना है ।

यहाँ दो व्यक्ति नहा रहे है सामने से पानी की बौछार आ रही है।

एक जिम है जिम में कुछ मशीन रखी हुई है।

यहां बहुत सारे लोग एकत्रित हुए हैं जहां पे सभी लोगों ने टोपी लगाया है कुछ व्यक्ति छाता लिए बैठे हैं और सभी सामने की तरफ देख रहे हैं।

यह एक प्रदशनी है जिसमे बहुत बड़ा सा खेलने का गेम लगा है। गेम के पास एक व्यक्ति खड़ा है।